इस चित्र में आसमान दिख रहा है हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं।

और सारे खंधो में कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है।

और अलग अलग रंग के सामान रखे हुए हैं।